शानदार सी नजारू छा अर बड़ी बड़ी इमारतां बणौंदा।

बड़ु प्यारु सु नजारा।

त भोर मा यु बड़ु प्यारु सु नजारा दिखे --

खाद्य भंडार मा औंदु जान दुकान मा त यू एक बड़ू सु दुकान मॉल होंदी।

यु ऑफिस कू नजारा।